बहुत मस्त फील्ड है काफी इइ लंबे-चौड़े में है।

ये काफी अच्छा लग रहे हैं ये जैकेट में हाथ लगाए हुए हैं।

ये पुल के इधर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है।

सब गीट्टी कोई बालू उठा रहे हैं रख रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है हमको |

यहां रनिंग है यहां पे दौड़ा जाता है काफी स्पीड में।